इसका कलर पीला लाल है और काला है सामने ढेर आदमी बैठा हुआ है।

दुकान के बाहर ढेर सारा सामान रखा हुआ है और सामान टंगा हुआ है।

सामने लाल कुर्सी पर कुछ लोग बैठा हुआ है एक दीवाल है पीछे खंबा गड़ा हुआ है।

यह फोटो में एक बड़ा सा गार्डन दिख रहा है जिसके बगल में बड़ा सा घर है।

पानी के अंदर कजली जम गया है नाव भी गंदा हो गया है।

यह एक कॉफी शॉप का फोटो है यहां पर दो लड़का बैठा हुआ है।

में एक छोटा सा सेटर लगा हुआ है।

लास्ट गोदरेज काला कलर का है और वाइट कलर का डॉटेड दिया हुआ है बीच में एक गोदरेज है जो गुलाबी कलर का है।

एक बड़ा सा आईना लगा हुआ है काफी सुंदर लग रहा है नीचे कुछ सामान बिखरा हुआ है बगल में एक फूल है।

फोटो में एक लंबा चौड़ा त्रिया में घर दिखाई दे रहा है।

कोने में दो तकिया रखा हुआ है जो गोल है।

सामने जो जेंट्स है उस मास्क लगाया हुआ है।

कैमरा लगा हुआ है ऐ ऊपर पंखा का डब्बा रखा हुआ है।

पीछे एक शटर है केक के ऊपर चेरी भी है ।

इसमें बनियान रखा हुआ है और भी रंग बिरंग के बहुत सारे कपड़े हैं।

सामने दीवाल है जो सफेद कलर का है और बहुत ही सुंदर लग रहा है ।

बर्तन में लड्डू रखा हुआ है सामने कुछ आदमी खड़ा है पीछे लाइट जल रहा है।

उनमें तार पार हुई है आसमान पूरा लीला है।

ये धुन बादल है कुछ आदमी भी दिखाई दे रहा हैं।

इसके बाहर में बड़ा सा गेट बनाया हुआ है उसमे बहुत सारा फूल टंगा हुआ है ।

ढेर सारा पत्ती टंगा हुआ है उसको सीलिंग का हुक में टांगा हुआ है उसमें फूल उगा हुआ है।

हरा हरा कुछ कपड़ा टंगा हुआ है ढेर सारा बांस बना हुआ है।